दुकान टाइप का हाई लाइट्स क्रूस नाम का ये बोर्ड लगा हुआ है आई जी का --

ये वो बना हुआ है फोटो और इमिग्रीएसन कंसल--

जो ब्लू कलर का बोर्ड है बैकग्रॉउंड उसका ब्लू कलर का--

ये गाड़ी इसका शोरूम है जो इसमें गाड़ी लगा हुआ है गाड़ी का नाम ग्लेंजा है इसका कंपनी टोयोटा का है उपर में डिजाईन बनाया हुआ है।

अन्दर में बोहोत सारा सीसा से बना गिया हुआ है और दो तीन आदमी खरा है ब्लैक कलर का कपड़ा पेहने--

ये एक छोटा सा किराना स्टोर है जिसमे बच्चे का --

पेहने वाला हगिस है और पान पिने का पानी किल्ले है स्प्राईट का बोटल रखा हुआ है।

इसमें दो बोर्ड लगा हुआ है एक वाइट बोर्ड है एक ब्लैक बो ब्लैक बोर्ड है।

और गाड़ी में वाइपर लगा हुआ है एक अंदर गाड़ी रखा है टू लेट लिखा हुआ है शीशा का मकान है।

गार्डन अच्छा से बना हुआ है एक पोल दिख रहा है।

बहत सारा आदमी खड़ा है ऊपर में लाइट वाइट जल रहा है।

यहा मारवा लगा हुआ है उपर वाइट कलर का पेंट किया गया हुआ है आगे से सीसा है।

वाइट कलर की एक लाख पोस्टर बनाया गया है।

हरे रेड अह लाल है और वहां ये लिखा हुआ व्हाईट कलर में।

खिरकी है गेट है गेट खुला हुआ है खिरकी भी खुला--

ये ऐसे गार्डन जैसा है इसमें नारियल का पेड़ सा बहुत बड़ा लगा हुआ है एक छोटा सा भी पेड़ लगा हुआ है शो पे --

ढक कर के चारो बगल से पौधे लगाया गया हुआ है बहुत सारा पेड़ सब है हरा हरा पेड़ है --

चल रहा है बहोत सारा आदमी वहाँ उपर खरा है एक रेड कलर का आदमी खरा है बाहर।

यहाँ पर ये टिशु पेपर रखा हुआ है सोस रखा हुआ है कटोरा रखा हुआ है टेबल है।

और बैकग्रॉउंड में ये उन्नई का पोस्टर लगा हुआ है।

ये एक क्रेजी चिकन वेझ नॉनवेझ का दूकान है इसमें वाइट रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है क्रेजी --

और होटल सिटी हर्ट रेड में लिखा हुआ--

ये दो ख्च्चर है उसके बगल में रेड कलर वाइट कलर का एक ये पट्टी लगा हुआ है।

और पीछे पथर है मिट्टी पे खरा है दो वेह--

रेड में भगवा रंग का एक बच्चा और एक लड़की रेड कलर की टीशर्ट पहन के खड़े--

हरा कलर का कपड़ा है और हरा कलर से घिरा हुआ है बहुत सारे फूल लगे हुए है पीला कलर का रेड कलर का --

पिंक कलर का है और वाइट कलर का नीचे में बॉडी है।

फ्रंट का दिख रहा है और तिन पिलर है उसपे कुछ आदमी बैठे --

ॐ जय माँ लिखा हुआ है और कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है केला रखा हुआ है कुच्छ ड्राय फ्रूट्स है और--

ये है की लोग रनिंग प्रेक्टिस कर रहा है तीन लड़का है और तीनो आगे पीछे दोड़ रहा है।

ये एक मछली का दुकान है बहोत सारा मछली है बहोत सारा लोग मछली--

एक खुला हुआ है पर्दा लगा हुआ है।

गार्ड वाला ड्रेस पेहन के कुछ लेडिज मैडम खड़ी है कुछ --

तिन ऊ ग्लास का साइन है और वी टू --

ये एक बहुत पुराना किला है किला में बहुत सारा घास है बहुत सारा जंगल है बहुत अच्छा किला है।

ये कार रिपेयर सेन्टर जिसका नाम कार केयर है थ्री एम लिखा हुआ है।

ये ब्लैक और वाइट कलर में पैंट किया गया हुआ है।

ये एक गुरु दुआरा है जिसपे चंडीगड गुरु दुआरा स्थापन--

हां और इसमें गेट दिख रहा है गेट लगा हुआ है और सन नाईट का शो है।

इंडियन आयल लिखा हुआ है हिंदी में बिलैक कलर उसका बैकग्रॉउंड ।

वैशाली है एक स्टोर है और उसका नाम--

और यहाँ से बस एस्टोप देखने में लग रहा है।

सारा आदमी वेट कर रहा है बस के लिए ये एक बस स्टैंड है ब्लू कलर का छतरी दिया गया हुआ है रोड पर कुछ आदमी खड़े हैं और बैठे भी हुए हैं।

पर्दा एक का बनाया गया हुआ है ऊपर अलबेस्टर रखा हुआ है नीचे।

काम सा होता है रेड कलर का बिल्डिंग है।

ये एक शॉप है जिसमे बास्किंग बिअर रोबिन लिखा हुआ एक आदमी है।

ये एक किराणा स्टोर है यहा लिखा हुआ है माउन्टेन डीउ का प्रचार किया गया है पोस्टर में इसका नाम है किराणा स्टोर --

डर के आगे जीत है माउंटेन डिउ एक ठेला लगा हुआ--

डार्क कलर का नीचे रखा हुआ है और कुछ बैग रखा हुआ है बॉटल सब है --

ये है एक सुन्दर सा बेड है और ब्लू कलर का दीबार --